रहे है पीछे एक क्रॉस चिन्ह बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक रूम नजर आ रहा है जहां पं--